यह एक अस्पताल है इस अस्पताल में बहुत सारे लोग इलाज करने के लिए आते हैं और यहाँ बहुत सारे लोगो की भीड़ लगी हुए हैं यह अस्पताल बहुत ही पुरानी है और यहाँ बहुत लोग इलाज करने के लिए आते-जाते रहते हैं ।